यह होटल में थ्री औ फ्लोर्स है ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर शीशे का डोर है जिससे हम अंदर आ जा सकते है इसके बगल में एक बिल्डिंग है।

यह अनवर कंप्यूटर शॉप है एयरटेल का सिम्बोल है इसके पीछे एक पेड़ है बड़ा सा उसके बग़ल में एक घर है ऊपर लाइट हैं बहुत सारे वायर हैं एक खिड़की है जो बंध है।

यहाँ पर पानी है पानी के सामने एक बड़ा सा चट्टान है पानी अगल में बगल में अ रेत है छोटे- छोटे पेड़ दिख रहे है चट्टान काफी दूर तक दिख रहा है पानी एक दम साफ है आसमान भी एकदम साफ है।

एक समुद्र है समुद्र में पानी है पानी के सामने बोहोत सारे लोग है छोटे मोटे घर है सीडियां है मे पेड़ है और एक तीन फ्लोर वाला छोटा सा घर है एक बोट है।

यह एक विशाल बड़ा ओशन है इसके के सामने चार पाँच बोटस है यहाँ आसपास थोड़ा सा कचरा है पत्थर है लहरें है हम दूर तक देख सकते है जैसे के आसमान बहुत ही नीला है।

दुकान है दुकान के ऊपर एक माँ और बेटे की पिक्चर है जिसमे ट्विन लिखा हुआ है एक प्लस मेडिकल का सिंबल है इस दुकान के ठीक बगल में एक कार है कार के बगल में बहुत सरे इट पड़े हुए है इट के बगल में पेड़ है।

ये दुकान हैंजिस का नाम हैंथाईराड कैम्प हर्ष नर्सिंग होम का एक बोर्ड पड़ा हुआ हैं सामने साइकिल खड़ी हुई हैं एक टेबल खड़ा हुआ हैं दो बाईक खड़ी हुई हैं यहाँ पर दवाखाना लिखा हुआ हैं।